रंगोली में जामुनी लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया हैं।

कुछ दूरी पर दो महिलाए भी वाहन के पास खड़ी हैं।

दीवार पर तरह -तरह के कार्टून बने हुए है एक नीले कलर का घर भी दिखाइ दे रहा है।

जिसका मुख्यालय मुंबई में है अडानी ग्रुप को स्थापित करने वाले गौतम अडानी है यह उन्ही की कंपनी है।

झारखंड में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या छब्बीस है जिसमें से यह विद्यालय एक है।